यहाँ पे रेलवे स्टेशन है ऊपर से जाने का रास्ता है तार वगैरह है हरे कलर का इंजन है गिट्टी वगैरह हैं।

और इधर घास दिख रहा है इधर पेड़ भी है इधर ट्रेन का चक्का भी है सोकप भी है और क्या कहते है ?ट्रेन खड़ी है ट्रेन के नीचे गिट्टी वगैरह हैं।

और गिलास है और क्या कहते है उधर चम्मच है कटोरी है इसमें क बिरयानी निकला हुआ है गोस्त भी है और एक कलर भी है यहाँ पे कुछ--

यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे है यहाँ पे छतरी भी है शीटा भी है और क्या कहते है।

पानी बहुत गहराई है उधर बहुत सारा बिल्डिंग है अच्छा दिख रहा है खूबसूरत है आसमान में भी कलर है और इधर कबूतर भी बहुत सारे--

उधर भी चेयर है यहाँ पे लाल कुर्सी है जिसपे लोग बैठे हुए है वहाँ पे लिखा हुआ है और इधर बत्ती जल रहा है वाइट कलर का--

इधर पेड़- पौधे बहुत है इधर लाल कलर का टी_शर्ट पहना है पीला कलर का टी_शर्ट पहना है बाईक भी है गिट्टी भी है बालू भी दिख रहा है और इधर गेट है मेन गेट है आने के लिए--

यहाँ पे हरा हरा पेड़ है जमीन में मिट्टी है यहाँ पे बॉय्ज़ हैं यहाँ पे गर्ल हैं गर्ल हैं।

ये बहोत बड़ा घर है इधर तीन ठो ऐ.सी. रखा हुआ है वहाँ पे आदमी दिख रहा है और इधर गर्ल है गार्ल है।

ए_टी_एम का पूरा डिस अथि डिस्प्ले दिख रहा है बहुत अच्छा ए_टी_एम है पैसा निकालने वाला--

हैलो गाइस यहाँ पर लग रहा है कि जिम सेंटर है ठीक जिम सेंटर में ये सब बॉडी बनाने वाले दिख रहे हैं दो बॉयज शीशा वगेरा सब हैं ठीक और मार्बल भी बिछा है क्या लग तो रहा है।